लड़कियां योगा कर रही है उनके नीचे कार्पेट बिछा दिए गए हैं।

एक बोर्ड दिखाई दे रहा है जो वायरिंग किया हुआ दिखाई दे रहा है।

ब्राऊन कलर के गेट दिखाई दे रहे हैं।

में से बहोत सारे कार दिखाई दे रहे हैं क्योंकि तरह तरह के कार हैं अलग अलग कंपनी के कार है।

के पीछे बहुत सारे साबुन फ्रिज में फ्री दिखाई दे रहे है।

बहोत बड़ी फिसलने के लिए एक ब्लू कलर की टॉय बनाया गया है।

एक बूढ़ा आदमी व्हाइट कलर के शर्ट पहने हैं और वो आगे की ओर आ रहा है।

इस चित्र में हम यह देख रहे हैं की यह एक बड़े घर का चित्र है।

आदमी भी दिखाई दे रहा है जो अपने कंधे पर गमछी लेके खड़ा है।

ये चित्र में हम यह देख रहे हैं कि एक बाइक के दुकान का चित्र है उसमें से एक बोर्ड में हीरो लिखा हुआ है।

एक आदमी माइक लेके कुछ बोल रहे हैं और उनके आगे बहुत सारे बैलून रखे हुए हैं जोकि ग्रीन रेड और येलो कलर के है।

उधर से एक बुड्ढे आदमी सामने की ओर आ रहे हैं और इसके बगल में एक रेड कलर के एल्बेस्टर से बड़ा घर बनाया गया--

बगल में बहुत सारी बाइक दिखाई दे रहे हैं और चार पांच व्यक्ति भी दिखाई दे रहे हैं।

इसमें से बहुत सारे साइकिल दिखाई दे रहे हैं जो कि छोटा साइकिल है और बड़ा साइकिल भी हैं।

और मुझे एक इशारने में बहुत सारे चुटकुले आदमी दिखाई दे रहे हैं।

और सूर्य और छोटे और बहुत पौधे दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र में हमें बहुत बड़ा समंदर दिखाई दे रहा है।

इसमें बोर्ड टंगा हुआ है और बोर्ड पर लिखा है अभिनंदन साइकल स्टोर ।

यह चित्र में यह देख रहे हैं की यह चित्र एक स्कूल का चित्र है।

खेत में हल्के ब्लैक कलर के हैं और हल्के रेड कलर के हैं।

इस चित्र में बहुत बड़े दो खंभे दिखाई दे रहे हैं।

मूर्ति के पीछे के जो चादर है वो ब्लू कलर के हैं।

यह चित्र एक दुकान का चित्र है जिसमें दुकान में बहुत सारे सामान रखे गए हैं।

नीचे में बहुत सारे आदमी जैसे कि महिलाएं पुरुष--

लपटप है एक डेस्क है और बेड दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में हमें पानी दिखाई दे रहे हैं जो की बहुत अधिक कुहासा है।